कुछ व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ हाथ पे हाथ रखे हुए खड़े हैं।

यहां पे दो कांच के दरवाजे बड़े बड़े लगाए गए हैं।

आसमान भी नजर आ रही है।

उसके बाहर एक छोटा सा ग्रीन कलर का टेबल रखा हुआ है।

एक नाव बहुत सारे व्यक्ति से भरे हुए हैं।